यह दृश्य छट पर्व और कार्तिक पूर्णिमा तहेवार को आमंत्रित कर रहा है.

कही कही तो खिलौने बिकने वाले का दुकान भी दिख रहा है इसमें बिजली के खंभे भी दिख रहे है.

थाना एयरपोर्ट थाना राज्य झारखंड का बोर्ड भी लगा --

इसमें ब्रेड भी रखा हुआ है.

यह एक चिड़ियाघर का चित्र है इसमें एक आदमी दिखाई पड़ रहा है वह चिड़िया को देख रहा है.

टावर भी लगा हुआ है साइड में.

इस चित्र मे बोहोत सारे पौधे दिख रहे हे ये पौधे ट्यूब मे रखे हुई हे.

दूकान के बाहर दो छतरी लगे हुए हे.

चेर सब डेकोरेट किये हुई हे.

दुकान के बाहर एक बैनर लगा हुआ है इस बैनर में से हिंगलाज बुक डिपो लिखा हुआ है।

कछुए के दो पैर दिख रहे हैं.

यह टाइगर हील का चित्र है.

बहुत सारे आदमी खड़े है कोई इधर उधर जा रहा है अपने कामों पे--

और एक पोस्टर लगा हुआ है इसमें लिखा हुआ है डेनिम --

कुछ आदमी वेट कर रहे हैं.

इस दुकान में लाइट लगा हुआ है.

यह घर का चित्र है इसमें फिजिकल एक्सरसाइज करने का मशीन भी रखा हुआ है।